कुछ लोग नदी के अंदर दिखाई दे रहे है और पीछे की तरफ मंदिर दिखाई दे रहा है।

की तस्वीर में बिल्डिंग दिखाए दे रही है। बिल्डिंग के सामने में एक टावर लगा दिख रहा --

और एक झोपड़ी में मगन ना खुश दिख रहा है पीछे पेड़ लगे दिख रहे हैं।

उनके सामने जमीन में कार्पेट डला हुआ है। एक आदमी बैठा दिखा दे रहा है।

एक पेड़ सूखा दिख रहा है एक हरा सा पेड़ दिख रहा है तार दिख रहा है।

पिले रंग के बोर्ड में कॉमपीटीशन किंग बुक फेयर लिखा दिख रहा है हरे रंग का पर्दा दिख रहा है।